ये तस्वीर एक रूम की है।

बहोत सारे दरवाजें लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक दुकान की है।

यहां कुछ कुर्सियां और मेज भी रखे हुए हैं।

चिपकाई गई हैं इस पर लाल रंग के चित्र में कुछ लिखा है।

इस पर एक कॉपी भी रखी हुई है।

ये तस्वीर एक घर की हैं।

ये तस्वीर एक कमरे की है।

बेचने वाले भी हैं और यहां रात हो रखी है।

दीवारों पर पेंपलेट्स लगी हुई हैं और बहोत बड़ा ये कमरा--

सोफे पर कुशन रखे हुए हैं।

रखा है यहां कुछ तीन कंटेनर भी रखे हैं।

ये तस्वीर एक मकान की है।

ये तस्वीर एक कमरे की है यहां पर एक लोहे का--

ये तस्वीर बहोत सारे बच्चों की है।

ये तस्वीर एक गार्डन की है।

गार्डन में बहुत सारे पेड़ और--

बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

दुकान पर नीले रंग की सफेदी करी गई हैं।

जहां एक बड़ा कंटेनर बीच में रखा हुआ है।